एह एक दुकान है जोकि बहोत बड़ा दुकान है और काफ़ी नामी दुकान है यहाँ--

एक घर है जो की बहुत बड़ा है यह--

ढेर सारे आदमी भी है जो कुर्सी पे बैठे है और टेबल है।

जोकि फुल से सजाया है काफ़ी खूबसूरत और जोकी पे --

बहोत ही लंबा-चौड़ा दुकान हैयहाँ --